सामान सब रखा हुआ है इसमें बहुत सारे फोटो भी लगे हुए है और देखने में बहुत सुंदर --

यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है इस पार्क मैं हरी हरी घास भी दिखाई दे रहे हैं ।

ये सीतामढ़ी का तिरहुत उत्पादन दुर का है।

दिखने से लगता है की एक आदमी चश्मे पहने खड़ा हुआ है।

और कटिंग भी करी है यहां पर एक वियक्ति मास्क लगाए खड़ा है असमान --

डेकने से लगता है यहाँ पर कोई चीज़ का चल रहा है उसमे दो आदमी है चार आदमी है एक आदमी मकान --

यहाँ अनेकों पेड़ है यहाँ पर अ पीठ --